इस फोटो में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है इस रेस्टोरेंट के ग्राउंड पे बहुत सारे चेयर्स और एक वाटर फाउंटेन बनाया हुआ है साथ ही साइड में कुछ पौधे और गार्डन टाइप एरिया है।

इस फोटो में एक लड़का है साथ ही उसने ब्लू और वाइट की चैक टी शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई है।

इसके साइड में ही एक बहोत बड़ा घर है इस घर के छत पे दो ब्लैक कलर टंकी लगी हुई है।

साथ ही स्टेशन के दूसरी तरफ बहुत सारी पटरी और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक सैलून हैं इस सैलून में एक लड़के की हेयर कटिंग हो रही--

इसके दूसरी तरफ एक स्कूल बन रहा है जिसका काम अभी चल रहा है और इसमें बहुत सारे बस रखे गए हैं जिसका कलर येलो है।

इन कंटेनरो का कलर येलो कलर का है साथ ही उसके बगल में एक डलिया रखा हुआ है और साइड में तराजू रखा हुआ है।

साथ ही इसके वॉल पे बलून्स और सीलिंग पे लाइट्स लगी हुई है।

के साइड साइड में एक ग्राउंड है इस ग्राउंड के साइड साइड में बहोत सारे टावर लगे हुए हैं और पीछे साइड बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

आधे इसके साइड में कुछ क कूड़ा कचरा फेंका हुआ है साथ ही इस फोटो में एक बहुत बड़ा ब्रिज है।

इसके साइड ही में एक छोटा सा कुटिया टाइप घर बनाया हुआ है।